टमाटर खराब नहीं होगा इसके लिए है।

और उधर पेपर भी रखा हुआ है। कटिंग करके कुछ बना रही है। सभी बच्चे बैठ कर के अपने-अपने काम में लगे हुए हैं।